बगल में एक टेबल रखा हुआ और टेबल पे एक कॉपी रखा हुआ है और--

रोड के किनारे एक बहुत बड़ा कैफे है और--

और ऊपर कैमरा लगा हुआ है दूसरे दीवाल पे एक फोटो फ्रेम लगा हुआ है।

और काफी श्रद्धालु मंदिरके अंदर जा रहे हैं।

सबको बारी-बारी से पूजा करवाने के लिए अंदर जाने दे रहे हैं।

नजर आ रहे हैं और बगल आस पास बिल्डिंग नजर आ रहे --

सामने रोड दिख रही है रोड के किनारे छोटे-छोटे--

पौधे लगे हुए है फूलों के लगे हुए हैं और कुछ सजावट के पौधे लगे हुए हैं जिसे कटिंग करके अच्छे से सजाए गए और बहुत ही साफ सूत्र रखे गए हैं।

नदी है जहा पे लोग भीड़ लगाए हुए अगल बगल में घास पूस घ --

किनारे बहुत सारी लाइट लगी हुई है और सीढ़ियां दिख रही हैं जिससे सब नीचे आए और नीचे बहुत बड़ा तालाब है।

बिस्किट है कॉलगेट है और हारपीक है पैड है बच्चों के लिए हगीज है बैटरीज है बहुत सारी चीजें बल्ब रखी हुई है।

एक लड़का है जो की फोटो खिंचवाया है एक पार्क में और पार्क में एक हाथी का स्टेचू है।

जो कि हरे भरे हैं भूख दिख रही है ऊपर आसमान भी सफेद दिख रहा है।

और दुकान के बाहर इसने पुतले में पेहनाया हुआ है सूट सलवार ओढ़नी लगाया हुआ है।

वृक्ष लगे हुए हैं और आसपास गमले में फूल लगे हुए हैं पौ--